टेबल पे काले रंग की पर्दे लगे हुए हैं काफी बीच में एक पिलर है पिलर के नीचे गमला रखा गया है।

नीचे कुछ दुकाने दिखाई दे रहे हैं दुकानों में चुनरी मालाएं लटकी हुई है।

विक्स रखे हुए हैं और बालू का ढेर लगा हुआ है और कुछ हरे भरे पौधे हैं।

एक मुड़ा हुआ है एक और कांच के शोकेस में छे छोटे रंग बिरंगे खिलौने दिख रहे हैं।

प बहुत सारे सामान रखे हुए हैं सामान में कॉस्मेटिक परफ्यूम और अन्य चीजें हैं।

फर्श पर नीली और सफेद टाइल्स लगी हुई है दुकान में नीली रोशनी इस्तेमाल की गई है।

डेस्क पे बहुत सारे युवक बैठे हुए हैं साथ ही दीवारों पे बहुत सारे खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

घर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे पी वाई ए एल आई एन एस टी आई यू टी ई इंस्टिट्यूट लिखा हुआ है।

युवक ने ब्लू रंग की शर्ट पहनी हुई है और ग्रे रंग की जैकेट पहनी हुई है और साथ ही कान में इयरबड्स पहने हुए हैं।

साथ ही दो रेक में हेलमेट रखे गए हैं एक काउंटर भी दिखाई दे रहा है।

उस बोर्ड पे सपोर्ट स्टाइल लिखा हुआ है।

सी पे ब्लैक रंग की कटोरी में सांभर है और एक भूरा रंग का ढ़ोसा रखा गया है।

और एक प्रिंटर दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें बहोत सारे डिबे दिखाई दे रहे हैं जिनपे एक्वालाइट लिखा हुआ है।

बेंचेज पे प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट के क्राफ्टियल मटेरियल पड़े हुए हैं।

एक युवक खड़ा दिखाई दे रहा है जो ट्रक के पास खड़ा है।

उन्होंने सुरक्षा के लिए हेलमेट और वेस्ट पहने हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक पक्षी दिखाई दे रहा है जो मोर है।